कुछ प्लेयर लाल ड्रेस मे दिखाई दे रहे है और एक अंपायर दो अंपायर दिखाई दे रहे है और वहा पर फुटबॉल गेंद भी डली हुई है और हरी घास लगी हुई है ।

यहाँ पर हमें एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और उसमें बहुत तेजी से पानी जा रहा है और वहाँ पर पत्थर भी डले हुए दिखाई दे रहे है जो की बहुत बड़े - बड़े हैं।

बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए है हरी -भरी घास फूस भी लगी हुई है कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

खम्भा बिजली वाला भी दिखाई दे रहा है मोबाईल नेटवर्क वाला टावर भी दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ की टहनियाँ भी दिखाई दे रही है और सीधा एक रोड निकला हुआ दिखाई दे रहा है।